एका बूढ़ा अंदर बैठा हैं एक किलो बा एक तराजू रखी हैं दो आदमी हैं जिनके पास दो बैग रखे हैं लाइटे लगी है।